नीचे में कटिंग किए गए पौधे नजर आ रहे हैं.

यह एक एक हाथों में अमृद् रखा हुआ है.

ये किसी घर का फोटो हे जिसमे हरे कलर के गेट और घर के बाहर हरे कलर के बोहोत सारे गोल गोल बनाये गए हे.

यहां पे पोस्टर लगा हुआ है.

एक सफेद कलर की लाइन बाई लाइन बहुत सारी गाड़ियां देखने को मिल रही है.

पिछलने वाले यहाँ पे निचे मे पानी हे बहुत सारी पानी रखी हुई हे स्विंग पूल मे.

यह किसी पार्टी का चित्र हैं.

इस फोटो में पांच व्यक्ति खड़े हुए हे सेल्फी खीचा रहे हे.

दो इसमें से तीन पुरुष और दो महिला व्यक्ति हे.

और उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए नकली फूड.

साबुन सरफ बहुत सारे आयुर्वेदिक वस्तुएं हरे कलर के सामान मे रखी--

ऊपर में दो-तीन खिलौने भी रखे हुए हैं.

एक बड़ा सा ग्राउंड हमें दिखाई --

इस फोटो मे हमें पचास से भी अधिक व्यक्ति स्कूल के बच्चे बैठे हुई नजर आ रहे हे.

यहाँ पर हमें ब्लू कलर की बेंच दिखाई दे रही हे पी--

यह किसी विद्यालय का फोटो हे.

जिसमे हमे बहुत सारे बैलून देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग कलर की स्कूटी हे.

इस फोटो मे हमें ऊपर मे स्टेज पे बोहोत सारे व्यक्ति नाचते हुई दिख रहे हे.

यहाँ पे कुछ काफी अच्छा सजावट किया हुआ हे.

यहाँ पे बोहोत सारे व्यक्ति प्रोग्राम देख रहे हे.